वहां पे बहुत से गुब्बारे लगाए गए है जो लाल तथा काले कलर के है पीले कलर के है वहा पे बहुत से अवॉर्ड रखे गए है।

इस इमेज मे हमे जो पीले रंग का है उसके पीछे एक बड़ा सा व्हील है जो लाल रंग का है उसके पीछे दो चार गाड़ियां है तथा वहा पे--

चल रही है जिसपे एक हरे कलर की टी-शर्ट वाला लड़का बैठा है तथा एक स्कूटी चल रही है।

इस दृश्य मे हमे एक मैदान का फोटो दिखाया गया है जिसमे वाटरफॉल लगाया गया है वहां पे बहुत से फुव्वारे लगाए गए हैं।

यह दृश्य मे हमें एक आदमी एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ बताया गया है जो आसमान को देख रहा है और ग्रै कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है तथा उस नदी के आस पास बड़े बड़े पहाड़ है।

इसमे एक प्रोग्राम के बारे मे बताया गया है जो एक कमरे मे हो रहा है वहा पे बहुत सी कुर्सिया लगी हुई है तथा स्टेज पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस इमेज मे हमे जीप बताई गई है जो--